जिसको रंग पेंट चूना किये हुए नीचा में और से दोनों साइड बिल्डिंग है और बिल्डिंग में अनेक प्रकार की रंग पेंट किये हुए हैं। बिल्डिंगे --

यह एक कॉलेज है यहाँ पर बी-टेक या इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर इंजीनियरिंग किया जाता है .यहाँ पर बहुत सारे अनेक प्रकार के इंजीनियर को सिखाने के लिए मशीन यन्त्र रखे हुए है।

नीचे एक मोटर बाइक खड़े हैं और उसे बाइक के ऊपर हेलमेट और उसी के जस्ट साइड में साइकिल भी खड़े हैं और दो वैन --

यहां पर दुवरी बोहोत सारे अनेक प्रकार के वृक्ष है। छोटा फूल आदि लागल हैं। सामने में चापा कल देखने को मिल रहा है ।

यँहा बहुत ही सुन्दर सुशील बिल्डिंग हमको देखने को मिल रहा है जो अनेक प्रकार के रंग से रंग किये हुए है।

ये मुजफ्फरपुर नगर निगम ऑफिस है यहाँ पर हमारे देश का तिरंगा झंडा दो देखने को मिल रहा है।

वह पे ऑफसर के चेयर लगे हुए है जो उस चेयर पर सिर्फ उसका मालिक ही बैठ सकते हैं चाहे उसको कुर्शी जिसको थमाया गया है वही बैठ सकते हैं।

उसी टेप से यहाँ पर अनेक प्रकार की वृक्षे रखे हुए हैं जो खरीद के ले जायेगा और लगाएगा। ये वृक्ष बड़े होकर के फूल फल देगा और आदमी --

यहाँ पर एक दुकान हमको देखने को मिल रहा है जिसका ब्राइट लाइनीग है।

यह अलग अलग क्वालिटीज़ के मंदिर बने हुए है यह मंदिर देखने में कुछ भोले बाबा के मंदिर के जैसे लगता भी है।